जैसे कि आप ये देख सकते हैं यह एक जो है कि चाय का दुकान है।

और इसमें जो एक अह है एम्पलाई काम कर रहा है।

इसमें की कई अलग से कार हैं कार पार्क की गईं हैं।

इसमें एक आने जाने का रास्ता भी है और इसमें एक पार्किंग कि सुविधा दियी गई है जैसे कि एक सोसायटी टाइप हैं।

यह एक सोने की दुकान है जिसमें अन्य प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं।

इसमें एक गणेश भगवान का फोटो भी है जिस पे हार लगा हुआ है।

इसके एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि छांव--

और यह दुकान सनराइज हाइट अपोजिट गुजराती स्कूल मोराबादी वलसाड में --

और इसमें जो की काफी अलग अलग काफी बढ़िया बेड बनाया जा रहा है।

कृति का रंग जो है पीला है इसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसमें आकृति का बस मुंह दिखाई जा रहा है।

ये एक नर्सरी का फोटो है जिसमें दिखाया गया है कि कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें एक मैडम भी है वो भी बैठी हुई हैं जो उनकाे काम करवा रही हैं।

इसमें जो काम कर रहा है जो बच्चे हैं वो काफी धैर्यता से काम कर रहे हैं इसमें और काफी अच्छे से काम कर रहे जो काम कर रहे जो एकदम बिजी है।

उसने अपने खेत में सोलर पैनल लगाया हुआ है।

इसने ये सोलर पैनल को फिट किया है जिसके थ्रू उनको बिजली मिलेगी और उसके पीछे घर भी और काफी हद --

इसकी जो फर्श है वो भी काफी खुरदुरी हो चुकी है पुरानी हो चुकी --

गुजराती और काठियावाड़ी यहां हर प्रकार के अन्य भोजन मिलेंगे --

इसमें देख सकते है की वहां बेंच पे कही लोग बैठे हुए है जो की एकदम शान्ति से निहार रहे है मंदिर को एकदम --

जिसमें की मेरे हिसाब से देखा जाए तो तीन लड़के हैं अ चार लड़कियां हैं।

इसमें लड़के ने एक ने नीला पहना हुआ है हरा पहना हुआ है जिसमें ए_सी भी लगी हुई है।

जिसमे आप देख सकते हैं कि नीचे कई सारी चॉकलेटे रखी गई हैं जिसमें की फाइव स्टार है।

जिसमें हम देख सकते हैं की सामने एक बड़ा पांव की ठेला लगाया हुआ है।

एक उनके संचालक है जो अंदर जा रहे हैं जिन्होंने हरे कलर का कपड़ा पहना हुआ है।